नदी के उस पार पहाड़ नजर आ रहा है।

इस तस्वीर पर एक फूलों का बगीचा नजर आ रहा है ।

दूर में एक घर दिखाई दे रहा है।

सीढ़ी के सामने दो फूलों का टप रखा हुआ है।

पर एक घड़ी भी टंगी हुई है।

सामने की तरफ एक पंखा और एक ए_सी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर पर एक दुकान दिखाई दे रहा है।

बरामदे पर एक आदमी नजर आ रहा है।

हाइट पर जमीन भी नजर आ रहा है।

दीवार पर साइनबोर्ड टंगा हुआ है।

इस तस्वीर पर एक काले रंग की कुर्सी नजर आ रही है।

तस्वीर पर बहुत सुंदर दृश्य नजर आ रहा है।

नदी का पानी हरा दिखाई दे रहा है।

होटल पर बहुत सारे सामान रखे गए हैं।

बेलकुनी पर एक औरत खड़ी है।

बाएं तरफ के चट्टान पर घास फूस लग गए हैं।

खिड़की के पास दो ब्राउन कलर की कुर्सी नजर आ रही है।

कान के ऊपर पीले रंग से कुछ लिखा हुआ है।

रोड पर गाड़ियां नजर आ रही है।

पाथ पर कुछ लोग नजर आ रहे है।

ए_टी_एम की स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है।

एक बतख जमीन पर खड़ा है।

एक काले रंग का सोफा नजर आ रहा है।

पुल पर पहाड़ भी नजर आ रहा है।

बाइक पर एक पेड़ नजर आ रहा है।

टेबल पीले रंग में दिखाई दे रहा है।

कुछ खिलौने भी लटकाए गए हैं ।

सामने एक काले रंग का चेयर नजर आ--